और यहां पे ऊपर नजारे फोटोज लिए जा रहे हैं यहां पे नीचे दो तीन लोग भी हैं और नीचे यहां पे--

पे ये बोर्बन लिखा हुआ है बोर्बन स्टॉप कर के और यहां पे बहुत सारे स्टार्स के लाइट्स चालू है और यहां पे हैंड वॉश भी सैनिटाइजर भी रखा गया है।

यहाँ पे बहत सारी गाडी भी हैं और यहाँ पे पंजाबी लोग बहत सारे हैं और यहाँ पे पोलिसवाले भी हैं और यहाँ पे मेकानिक शॉप भी है।

ये रिझर्व बैंक और यहाँ के दोनों गेट बंद हैं और यहाँ पे रिझर्व बैंक के नीचें दीवार का वोल खींचा गया है।

बहोत सारे आदमीयां हैं आजू बाजू बड़े बड़े झाड़ा भी है हरे कलर के और ये आदमी फोटो ले रहा है अपनी और यहां पे बड़ा सा फहाड़ भी दिख रहा--

पाइपा भी है और राइट साइड में ऊपर ब्लू कलर की बिल्डिंग भी दिख रही हैं और यहां पे छोटे छोटे पॉट्स में बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए हैं।

यहाँ पे सीधा रस्ता है और आजूबाजू तलाब का पानी जा रहा है निचे से और यहाँ पे स्टीकर भी है और यहाँ पे--

और यहां पे बहुत सारे देखिए बॉक्सेस रखे हुए हैं और यहां पे दीवारों के बीच में छोटे छोटे स्पेस हैं बैठने के लिए नीचे देखने के लिए।

और रखा हुआ है सेल्फ के अंदर इसे देखने के लिए महीने में एक बार रखा जाता है साथ में बहोत दूर से सामान को लाया जाता है यहां पे टोकरी और उसके सामने --

अरे यहां पे राइट साइड में एक लोहे का बड़ा सा पाइप और उधर सीमेंट भी मिला रहे हैं।

हरे झाड़ा भी है और यहाँ पे हरी हरी घास है और रेड कलर के पॉट्स हैं यहाँ पे टाइल्स यह अपे बिछाए गये है और यहाँ पे --

ये ये बाहर बहुत सारे गाड़ीयाँ भी है और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस है यहाँ पे आजूबाजू बहुत सारे ऑफिस हैं और यहाँ पे बहत सरे गाड़ीया पार्क है और उनपे--

हॉट स्कूटी भी है और यहां पे आजू बाजू बहुत सारे पेड़ भी हैं और यहां पे बोर्ड पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ बोल के लिखा हुआ है और यहां पे ये आगे--

यहाँ पे फैन है यहाँ पे सामान है लेफ्ट हँड ग्लासेस है जगह है और बहुत सारा सामान है और यहाँ पे अमेझॉन --

लिखा हुआ है और यहाँ पे निचे बहुत सारा शीट्स भी है और ग्लासेस की सेल्फ्ज भी रखे हुए हैं और इनमें अपना अपना सामान अलग अलग तरीकेसे से--

और बहोत बड़े बड़े हरे कलर के झाड़ भी हैं यहां पे नीचे सामने रस्ता भी है और ये लेफ्ट साइड में जाली भी खींची गई है दे--

रस्ता जा रहा है और वहां पे रेड कलर का एक बंगला है और आजूबाजू बहत बड़े बड़े पैर हैं और उन्हें कटे बनाए गए है बैठने के लिए।